ये एक डी.जे गाड़ी है जिसमें सब छे माइक लगे हुए है एक उल हैलो हैलोजन लगा हुआ है ये गाड़ी में प पिंक कलर की पुती हुई है दो टायर दिख रहे हैं।

एक लड़की सी सुन रही है एक व्हाइट कलर ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखा है उसने टोपा लगा रखा है एक प्लाई